कांच की यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं।

यहाँ पे मैदान दिख रहा है मैदान में बहुत सारे रेत दिख रह--

और बगल-बगल लकड़ियों से घेर दिया गया है यहाँ एक घोड़ा दिख रहा है घोड़ा पे एक आदमी सवार है ऐसा लग रहा है घोड़ सवारी कर रहा है।

तो उसका यहाँ पे सलूशन निकाला जाता है खराब दांत दांत जो सड़ गया उसको निकाला जाता है।

ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई मॉल है।

मॉल में नई गाड़ी खड़ी है गाड़ी ये उजली कलर की है कुछ यहाँ पे जेंस और लेडीज भी खड़े हैं।

ओ ताई कमांडो के क्लास मे आते है यहां सब।

अंडे रखे हुए हैं लेज़ रखे हुए स्प्राइट की बोतल रखी हुई है।

चाय पत्ती ऐसा लग रहा है ये मोदी खाना का दुकान है।

बाइक दिख रहा है और हेलमेट भी दिख रहा है जो कि नीचे रखी हुई है और खुला खुला आसमा दिख रहा है।

उजले कलर की टी-शर्ट लाल कलर की टी-शर्ट पीले कलर की टी-शर्ट रखी हुई है।

और यहां पे कुछ बैलूने है जोकि काला और सादा है।

और कुछ आदमी यहाँ पे दिख रहे हैं।

ये सभी जो खड़े हैं सब पैसे निकालने के लिए ही खड़े हैं।

प्लाईवुड के दरवाजे हैं शीशे हैं और लाइटें लगी हुई है यहां पे डेक्स भी लगा हुआ है।

इस साइड लाइटें लगी हुई है यहाँ पे और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

क्या एक ऑफिस है यहाँ हर स्टाफ के लिए--

सीट लगी हुई है चेयर लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं मरकड़ी लगी हुई है अच्छी सजावट--

यहाँ पे लोहे की काली रंग की लोहे की बड़ी गेट है यहाँ पे मैदान है खाली खाली --

चंगड़ी मछली और भी तरह की मछलियां बिकती हैं।

यह एक मंदिर है मंदिर में भक्त जन आए हुए हैं।

यहां पे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है। पास ने साफ सफा मैदान दिख रहा है।

ऐसा लग रहा है यह फूलों की दुकान है यहां पे फूलों की माला बिकती है।

यहां पे कपड़े की दुकान है यहां पे तरह तरह के जेंट्स के कपड़े रखे हुए हैं।

गाड़ी की शोरूम दिख रही है ऐसा लग रहा है कि यह एक शोरूम है यहाँ पे न्यू-न्यू गाड़ी रखी हुई है तरह-तरह के नई नई--

यहाँ मुझे पानी पानी दिख रहा है पानी में नाव दिख रही है नाव की खिवैया हैं और खुला आसमान है।